और कुछ दीवारों पे ऐसे चिपका रखे फोटो है।

और काफी सब्जी और फ्रूटो के ठेले लगे हुए--

और जो हाथ जोड़े खड़े नजर आ रही है।